यहाँ पर बोहत सारी बकरियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं वे पानी पीती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बाउंड्री दिखाई दे रही बाउंड्री के थोड़े दूर जाकर बड़े -बड़े पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर ग्राउन्ड अ है ग्राउन्ड मे बोहत सारी हरियाली लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर मैच खेलने वाले दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर सीडियो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही सीडियो के नीचे पत्थर डरे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ---

यहाँ पर एक मकान की डेकोरेशन एक आदमी करते हुए दिखाई दे रहा है कुछ फूल की माल टंगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक घोड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक आंटी सीढ़ियों पे झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर एक चाय की दुकान दिखाई दे रही जिसमे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं राजश्री लटकी हुई दिखाई दे रही है सामने एक बाल्टी रखी हुई दिखाई दे रही ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ बड़ा दिखाई दे रहा--

यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ दिखाई दे रहा है स्टैचू के पीछे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहा है कुछ टंगे हुए दिखाई दे रहें--

स्टैचू एक कुर्ता और प्लाजो पहने हुए दिखाई दे रहा है स्टू स्टूल भी स्टैचू के बाजू मे दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर एक रोड दिखायी दे रहा है रोड के आजू बाजू बड़े- बड़े पेड़ लगे हुए दिखायी दे रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड खाली पड़े हुए दिखायी दे रहे हैं ऊपर बिजली की तार जाती हुई दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक टेबल फे दो प्लेट मे खाना रखा हुए दिखाई दे रहा उनमे चम्मच डली हुई दिखाई दे रही और प्लेट मे खाली दिखाई दे रहा एक अंकल का हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्लास रखा हुआ पानी का दिखाई दे रहा--